और साइड में दो रेड चेयर दिखी हुई है।

यहां पर कितने सारे प्रकार का सामान रखा हुआ है।

जिसके बराबर में एक भैंस बैंगनी वह बु शर्ट पहनो खड़ा हुआ है।

जिस पर यथा दृष्टि तथा दृष्टि लिखा हुआ है।

वो साइड में छोटे दो तीन गमले रखे हुए हैं।

और झील के पतली साइड कितने सारे पेड़ पौधे जंगल दिखाई दे रहा है।

ये एक होटल दिखाई दे रहा है।

यहां पर कितने सारे गमले लगे हुए हैं।

और पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

एक गाड़ी का कलर ब्लैक और दो गाड़ी का कलर रेड दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिनमें से कितने सारे चेयर पर बैठे दिखाई दे रही है और--